यह प्लेग्राउंड बहुत ही सुंदर है। इसका कलर हरा है ऊपर आसमान है जिसका रंग नीला है। यहाँं पर बच्चे फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी बेडमिंटन खो खो खेल सकते हैं।

ये कोचिंग भी हो सकती है यहां पर लाइट लगे हुए है | ऊपर झालर लगी हुई डेकोरेशन के लिए यह बहुत सुंदर है एवं बहुत ही पढ़ाई की जा रही है बच्चों द्वारा एवं इसी पढ़ाई --

प्रस्तुत चित्र में हमें स्विमिंग पुल नजर आ रहा हैं। स्विमिंग पुल का कलर नीला है। पीछे पेड़-पौधें दिखाई दे रहा है जिनका कलर हरा है। आसमान का कलर नीला है।

प्रस्तुत चित्र किसी मस्जिद से लिया गया हैं यह चित्र मस्जिद की भव्यता को बता रहा हैं इस मस्जिद के ऊपर एक सफ़ेद कलर की ऊँची सी मीनार हमें दिखाई दे रही हैं मीनार की संख्या एक है।